और कुर्सी को बहोत ही सुंदर से सजाया गया है और एक--

यह एक घर है जो कि इसमें दो बेड लगें हुए हैं।

पिंक कलर का दीवार लगे हुए हैं और एक आदमी बैठे हुए हैं।

प्रिंट ब्लू कलर से शायद इसको कलर किया गया है और लाइट्स नजर आ रहे हैं और दो वो बाजा इसमें बाधे हुए हैं।

यह एक रूम दिख रहा है व्हाईट कलर के।

रूम है और ब्लैक कलर के इसमें है एक स्कूटी नजर आ रहे है। एक लड़का बैठे हुए हैं कुर्सी में।

यह घर दिख रहे हैं घर है और ये गली इधर रस्ता है टाइल्स बिछाए हुए हैं और एक दरवाजा दिख रहे हैं।

आसमान दिख रहे है ब्लैक रात हो गया और बहोत ही आदमी नजर आ रहे है।

खिड़की से ब्लू कलर की रोशनी आ रहे हैं व्हाइट कलर के--

और बहोत ही सारा जिम करने का समान दिख रहा है।